देख सकते हैं की बहुत बड़ा एक ग्राउंड है ग्राउंड में एक बिल्डिंग भी है बहुत अच्छा घेरे हुए हैं ।

आप देख सकते है की बहुत ही बढ़िया एक बिल्डिंग है।

देख सकते है की एक बहुत बड़ा पार्क है बहुत सारे फूल है।